यहाँ पर एक बड़ा सा वाइट कलर का हॉल दिखाई दे रहा है और सामने ही कुछ बहोत सारी सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ हरे - भरे घास भी दिखाई दे रही है और दूर ही --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

साथ ही यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ फूलो की माला भी लगी हुई दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की लाइट भी यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही है।

फूलो की माला भी दिखाई दे रही है और पीले और --

उसी के किनारे ही रोड के किनारे ही कुछ घास दिखाई दे रही है दूर ही एक नदी भी दिखाई दे रही है और कुछ बड़े-बड़े घने से पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहोत सारे लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है साथ ही यहाँ पर एक बाउंड्री भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक हाउस दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है और यहाँ पर बहोत सारे लकडियां भी दिखाई दे रही है कुछ लकडियां सीधी है और कुछ लकडियां नीचे --

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है साथ ही यहाँ पर एक बाइक भी रखी हुई है और एक लड़का खड़ा हुआ है।